यह एक ऑप्टिकल है ऑप्टिकल में कुछ ग्राहक खड़े हैं और कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं।

यहां पे बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें है और कही कही पानी भी जमा हुआ है।

यहां एक गांव है जहां दूर एक तालाब नजर आ रहा है।

तालाब तक जाने का रास्ता कीचड़ का है।

झोपड़ी के पीछे पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक ड्राइंग रूम है जिसमें बादामी कलर का सोफा रखा है।

मैदान के बगल में ही एक झोपड़ी भी दिखाई देती है मैदान के ऊपर धुंधला धुंधला आसमान दिखाई देता है।

कुछ लकड़ो से स्लैप को थामा रखा है और यहां पर सब सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है।

यहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी दिखाई देता है।

वहां कुछ पत्ते और सामान बिखरा पड़ा है।

ये कोई धार्मिक स्थल नजर आता है और यहां पे कुछ पत्थर और हरियाली भी नजर आती है।

यह एक हॉल है हॉल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठ कर भोजन कर रहे है।

यहां पर सफेद रंग की छत है उसपे पंखे लटक रहे हैं और एक खिड़की भी नजर आ रही है।

पुरी नदी पत्थर से भरी पड़ी हैं नदी के साइड में बड़ा सा पहाड़ है।

और ऊपर आसमान भी धुंधला नजर आता है।

गुड़िया के कपड़े अलग अलग रंग के हैं जैसे कि गुलाबी सफेद और बैंगनी कलर की --

गुड़िया ने काले कलर के जूते पेहने हैं और नीचे कुछ बेट रखी गई है बेट भी हर रंग की ह --

यह एक बड़ी सी इमारत नजर आती है इमारत की खिड़कियों को प्लास्टिक से ढाक लिया गया है।

और इमारत के बगल से एक सड़क दिखाई देती है और कई सारे कमरे भी नजर आते हैं।

यह एक गैरेज हैं जिसमें लाल रंग की कार खड़ी हुईं --

बोर्ड के ऊपर प्रक्रूति पेट क्लिनिक लिखा हुआ है।

बड़े बड़े नारियली के पौधों के बीच में कई घर नजर आते हैं।

और कुछ घरों की छत पे सफेद और पीले रंग की पानी की टंकी है।

यह खेल का मैदान है मैदान के अंदर वॉलीबॉल की जाली लगी हुई है।

उसके अंदर कुछ लोग हैं और कुछ लोग चर्च के बाहर है।

दो व्यक्ति है एक व्यक्ति का चेहरा धुंधला है एक व्यक्ति खड़ा है।

अलमारी के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से दवा की बोतल शैंपू तेल की बोतल सब लाइन से रखा गया है।

और कुछ कंबले बैग के अंदर पैक कर के रखी हुई है।

फूलों से और खूबसूरत परदे से ये मंडप को तैयार किया गया है।

मंडप के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और लाइन बंद कुर्सियां भी रखी गई है।

चूल्हे पे बड़े बड़े पतीले रखे हुएं है।